ये फोटो किसी कॉलेज या विद्यालय के म का है जिसमें बहुत बड़ा बिल्डिंग है बहुत बड़ा और ये व्हाइट रंग का बिल्डिंग हैंऑरेंज कलर का आर्डर है।

हॉस्पिटल के अंदर का है इसमे एक बेंच लगा है बेंच के ऊपर एक कपड़ा रखा है ब ब्राउन या मैरून कलर का उसके नीचे एक टेबल रखा है प्लास्टिक का।

और उसको दिखा रहे हैं कुछ बना भी रहे हैं चार्ट पेपर भी रखा है एक --